यहां हम देख सकते हैं कि यह एक जिम का दृश्य है यहां पर जिम करने के लिए काले रंग की मशीनें पड़ी हुई हैं।

जहां पर दो तीन प्रकार की चाय पत्ती जैसे रेड लेबल ताजमहल--

यह घास में बैठी हुई दिखाई--

पुलाव पड़ा हुआ देख सकते हैं।

यहां हम देख सकते हैं कि यह एक क्रिकेट ग्राउंड है। यहां पर हरा भरा घास उगा हुआ है।

रात का समय है और लाइटें जली हुई है।

यहां हम देख सकते हैं कि यह--

नीचे की ओर एक घर बना हुआ है।

यहां पर कुछ बेंचेस पड़े हुए हैं यह आर_जे ड्राइविंग स्कूल है।

और कुछ बैठने के लिए भी--

यहां हम देख सकते हैं की लाइनो में काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई है।